नज़र आता है यह टूरिस्टर यहाँ पर रात के समय में रूकती है रूम के अंदर।

यह एक नाई की दुकान है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी कटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।